बहुत अच्छा से सजाया गया है सब कुछ यहाँ पर बहुत सुंदर लग रहा है देखने में।

जो कि यहाँ पे पूर्णिया का है ये जो कि इसमें बेचा जाता है।

बहुत अच्छा लग रहा है देखने में खूबसूरत भी है और --